बोर्ड पर अनि फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है।

इस बोर्ड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ लिखा हुआ है।

इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के कई सामान दिखाई दे रहे हैं बाहर डिश रखी हुई है।

यहां पर कुछ लकड़ी के तख्ते हैं एक कछुआ लकड़ी के तख्ते पर बैठा हुआ है।